लकड़ी का बना हुआ है इसमें दो बॉटल रखे है और एक कुछ बर्तन रख --

ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये किसी गार्डन की तस्वीर है।

और ये इसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है ये दाम जो बने होते हैं इनके काफी सारे गेट होते हैं जोकि बारी-बारी पानी इनसे छोड़ा जाता है ताकि बाढ़ --